यह किसी शादी का स्टेज लगता है। जहाँ पर एक सोफा रखा है।

ये सुबह-सुबह का टाइम है खुच लोग रोड के साइड में खड़े हैं। कुछ देख रहे हैंबिलकुल सुबह का टाइम है ठंड का टाईम है और उसके पास में एक गाड़ी खड़ी है बड़ी सी।

यहां पर कुछ लेबर अपना काम कर रहे हैं। उनमें से एक लेबर के हाथ में चोट लगी है। उसके हाथ मे प्लास्टर है।

यह भी एक बड़ी सी बिल्डिंग लगती है। शायद चर्च - चर्च है।

दिन का टाइम है और आसपास पेड़ पोधे है।

दुकान में बैठ के अपनी शेविंग या फिर कटिंग करवा रहा है। जो कि फ़ोन पे बात कर रहा है।

यहाँ पे लोग आके पैसे निकालते है ए.टी.एम. से।

और शायद ये मचली शायद ये मछुवारा है मछलियाँ पकड़ने आया होगा नाव के साथ।

यह किसी गैराज का सीन लगता है। जहाँ पर एक --

बहुत बड़ी- बड़ी टेबल्स है। लोग और बच्चे आ के यहाँ पर बुक से कुछ पढ़ रहे हैं।

यह किसी नदी के पास का सीन लगता है। जो कि --